बाईं तरफ टिकट खिड़कियां और जानकारी केंद्र मौजूद है।

बीच में कांच की एक अलमारी में हवाई जहाज का मॉडल रखा हुआ है।

दुकान के में लकड़ी की र्फस और चमकीली लाइट्स लगे हुए हैं।

और मेज के चारों ओर लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां रखी गई है।

इस तस्वीर में कुछ पहाडें नजर आ रही हैं।

पीछे एक गुलाबी रंग का घर दिखाई दे रहा है।

दुकान के ऊपर कपड़े और खिलौने रखे हुए हैं नीचे कुछ लोग बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।

ब्रा ब्रिंजल और सफेद रंग का किया गया है।

यहाँ लरकियों ने सफेद कपरे और लाल दुप्पता पहना हुआ है।

ये दुकान सफेद रंग की की गई है इसके नीचे स्टेशनरी शॉप लिखा हुआ है।

दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है पंद्रह रूपए।

पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में गिटार का बैट है।

यह तस्वीर एक बुक स्टोर की है जिसका नाम मिथिला बुक स्टोर है।

इसकी दीवारें और छत शादी है।